मुझे इसमें एक नंबर भी दिख रहा है जिससे--

और स्कूल दिख रहे हैं मुझे इसमें मंदिर में--

मुझे इसमें दो रूम दिख रहे हैं मुझे इसमें एक एल_इ_डी दिख रहा है।

मुझे गार्डन में फूल दिख रहे हैं मुझे गार्डन में पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

मुझे इसके पास एक येलो कलर की सेंटर टेबल रखी हुई भी दिख रही है।

मुझे इसमें एयरटेल मोबाइल की एक शॉप दिख रही है।

रूम के अंदर एक एसी दिख रहा है जो स्विच से कनेक्ट है।

रूम के अंदर एक टेबल फैन और--

मुझे दीवार में लगे हुए पोस्टर्स दिख रहे हैं।

मुझे इसमें एक जुलूस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इसमें हाईवे रोड दिख रही है।

मुझे इसमें कई ट्रक चलते हुए दिख रहे हैं।

मुझे इसमें एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

मुझे इसमें कुछ लोग बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं।